वेक्टर ऑपरेशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे एक वेक्टर को परिभाषित करने में
एक वेक्टर की लम्बाई की गणना करने में
वेक्टर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन करना
एक मेट्रिक्स को परिभाषित करने में
मेट्रिक्स के आकार की गणना करना
मेट्राइसिस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन का प्रदर्शन करना
इसकी पूर्व आवश्यकतायें यह है कि आपके सिस्टम पर सिलाब इंस्टॉल होना चाहिए
आपको गेटिंग स्टार्टेड विथ सिलाब पर स्पोकन ट्यूटोरियल को सुना हुआ होना चाहिए
आपको वेक्टर्स और मैट्रिसेज की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए
मैं प्रदर्शन के लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सिलाब 522 का प्रयोग कर रहा हूँ
सिलाब लांच करने के लिए अपने डेस्कटॉप पर सिलाब शॉर्टकट पर क्लिक करें
यह सिलाब कंसोल विंडो को खोलेगा
ध्यान दें कि कर्सर कमांड प्रॉम्प्ट पर हो
मैं सुझाव देता हूँ कि आप इस वीडियो को समय के नियमित अंतरालों पर रोक रोककर साथ साथ सिलाब में इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करें
अब वेक्टर को परिभाषित करने के साथ शुरू करें
यह दो तरह से किया जा सकता है स्पेस का प्रयोग करके जैसे प इस इक्वल टो स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
या कॉमा का प्रयोग करके जैसे क्यू इस इक्वल टो स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 कॉमा 3 कॉमा 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
हम वेक्टर प की लम्बाई ज्ञात कर सकते हैं कमांड लेंग्थ ओएफ प का प्रयोग करके और एंटर दबाएँ
हम वेक्टर्स पर विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रदर्शन कर सकते हैं जैसे कि दो वेक्टर्स का एडिशन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन तथा अन्य
एक वेक्टर का ट्रांसपोज अपोस्ट्रोफ जिसे सिंगल कोट के नाम से भी जाना जाता है का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है
प ट्रांसपोज यहाँ प्रदर्शित किया गया है हम p ट्रांसपोज टाइम्स क्यू की गणना कर सकते हैं कमांड प टाइम्स q ट्रांसपोज का परिणाम एक स्केलर प्राप्त होता है कृपया अब ट्यूटोरियल रोक दें तथा वीडियो के साथ दी गई प्रश्नावली संख्या1 को हल करने का प्रयास करें अब हम देखेंगे कि मेट्रिक्स को कैसे परिभाषित किया जाता है
एक मेट्रिक्स की एक रो के एलिमेंट्स को एक वेक्टर के लिए दिखाए गए के समान ही स्पेस या कॉमा का प्रयोग करके परिभाषित किया जा सकता है उदाहरण के लिए टाइप करके एक 2 बाय 3 मैट्रिक्स प को परिभाषित करते हैं प इस इक्वल टो स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 2 स्पेस 3 सेमीकोलन 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
ध्यान दें कि मेट्रिक्स की अगली रो को परिभाषित करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है
याद रखें कि सिलाब केस सेंसिटिव है
यहाँ मेट्रिक्स को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त वैरिएबल प का अपर केस में प्रयोग किया गया है
जो स्मॉल प से भिन्न है जो एक वेक्टर था
क्या आप जांच करना चाहेंगे कि इस बिंदु पर स्मॉल प क्या है
अब हम देखेंगे कि साइज कमांड का प्रयोग करके एक मेट्रिक्स का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है
इसके लिए टाइप करें स्क्वायर ब्रैकेट खोलें रो कॉमा कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें इस इक्वल टो साइज ओएफ कैपिटल प जो मेट्रिक्स है और एंटर दबाएँ
आपको निम्नलिखित आउटपुट प्राप्त होता है
ध्यान दें कि लेंग्थ कमांड मेट्रिक्स में एलिमेंट्स की कुल संख्या प्रदान करेगा जैसा कि आप देखते हैं
ट्रांसपोज कमांड मेट्राइसिस के लिए काम करता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है160 प ट्रांसपोज मेट्रिक्स प का ट्रांसपोज प्रदान करता है
अब एक 2 बाय 3 मेट्रिक्स क्यू को परिभाषित करते हैं कैपिटल क्यू इस इक्वल टो स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 5 स्पेस 3 सेमीकोलन अगली रो में एंटर करने के लिए 2 स्पेस4 स्पेस 8 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
अब प को एक बार और दोहराते हैं हम प और क्यू को शामिल करते हुए बिलकुल वैसे ही गणना कर सकते हैं जैसे हम गणित में करते हैं
उदाहरण के लिए हम गणना करते हैं ई इस इक्वल टो 2 टाइम्स प प्लस 3 टाइम्स क्यू और एंटर दबाएँ आप जाँच कर सकते हैं कि ये गणनायें सही हैं या नहीं
कृपया अब ट्यूटोरियल रोक दें तथा वीडियो के साथ दी गई प्रश्नावली संख्या 2 को हल करने का प्रयास करें इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कॉमा या स्पेस का प्रयोग करके वेक्टर को परिभाषित करना
length फंक्शन का प्रयोग करके वेक्टर की लम्बाई की गणना करना
अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करके वेक्टर या मेट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करना
कॉलमों को अलग अलग करने के लिए स्पेस या कॉमा का प्रयोग करके तथा रोज़ को अलग अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग करके एक मेट्रिक्स को परिभाषित करना
size फंक्शन का प्रयोग करके मेट्रिक्स का आकार ज्ञात करना
यह स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन द्वारा बनाया गया है
फॉसी प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी fosseeइन या scilabइन से प्राप्त की जा सकती है यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है
मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिये धन्यवाद
अलविदा